टोपी पहने हुए बरेंच पर बैठे हुए हैं और यहाँ बहोत सारी सफेद लाइट भी जल रही हैं और कुछ लोहे की --

इस इमेज में बोहोत सारी मछलियां रखी हुई ऐं और सामने --

इस इमेज में एक बोहोत बड़ा --

तालाब दिख रहा है और कुछ हरे रंग के पेड़ भी दिख रहे हैं और कुछ हरी घास पर दिख रही है और एक लोहे की --

कुछ हरे रंग के फेड़ पर दिख रहे हैं।

गोल्डन बेल्स पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है और कुछ हरी घांस भी दिख रही है सामने।

टायर भी रखे हुए हैं सामने। सामने ट्रैडर भी लिखा हुआ है।

इस इमेज में एक आदमी का हाथ दिख रहा है और वह हाथ में एक --

बोहोत सारी मोटरसाइकिल रखी हुई हैं और कुछ हरे रंग के पेड़ पर लगे हुए हैं। एक आदमी --

आदमी दिखाई दे रही है और दो बेजली के खंभे भी लगे हुए हैं। सामने एक बहोत बड़ी सफेद रंग की बिल्डिंग बनी हुई है।

खड़े हुए हैं। सामने एक आदमी हाथ ऊपर किए हुए हैं और कुछ लाल रंग कि ईट की --